धुआँ भी दे दिख रहा है जैसे कहीं धुआँ निकल रहा हो।

अ एक तो बहोत सारे आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

अ मीटिंग हॉल दिखाई दे रहा बोर्ड लगा हुआ है।

कुछ ऊपर कार्ड जैसे दिख रहे लगे हुए हैं।

यह एक राघव ट्रेडर्स अ शॉप दिखाई दे रही है जहां पर किराने का समान वगैरा--

थोड़ा डार्क अंधेरा जैसा दिखाई दे रहा है।

अ पानी का बहाव तेज तो नहीं है लेकिन पानी बह के क गड्ढे में आ रहा है ऐसा लग रहा है।

आ एक ट्रक जैसा कुछ इधरी पिल्लर जैसा कुछ दिख रहा है।

अंधेरे की फोटो है रात की अ लाइट्स दिख रही है थोड़ी थोड़ी कहीं दूर की।

यह एक लेडिस पार्लर दिखाई दे रहा है अह वायर दिखाई दे रहे हैं दो फैन हैं लाइट्स है।

अ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं अ और फूल आ गए हैं इसके अंदर।

है। लकड़ी की स्टूल दिखाई दे रही है।

मकान या हॉल जैसा लग रहा है।

अं बाकी लोग खेल रहे हैं कबड्डी जैसा दिख रहा है कबड्डी खेल रहे हैं।

यह एक कैंबियम अ की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है ग्रीन में--

यह एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है।

केले के पेड़ लगे हैं गन्ने टाइप का कुछ लगा दिख रहा है।

यह एक पेट्रोल पंप है जहां पर लाइटिंग दिख रही है एक स्कूटी से दो लोग इधर आते दिखाई दे रहे है।

गाड़ी वगैरह दिख रही है डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

सीडियो पे बैठे दिख रहे लोग एक टेबल जैसी कुछ दिख रही है।

और तीन लड़के खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहां बोर्ड लगा दिख रहा है। मोटरसाइकिल्स बाहर खड़ी है। कार खड़ी है और एक डस्टबिन सा डिब्बा दिख रहा है।

ऊं लाइटिंग दिख रही है अंधेरा खिड़की खुली हुई है।

यह एक जिम का दिख रहा है फोटो जिसके टायर पर मशीन के कुछ रेट लिखा हुआ है।

यह एक कॉलोनी या कंपनी का बाहर का बगीचा दिख रहा है जिसमें एक माली पानी देते दिखाई दे रही है।